टेबल के ऊपर में कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक गेट नजर आ रहा है।

चेयर के कलर रेड ग्रीन ब्लैक है।

और दूर दूर में बहोत सुंदर नजारा दिखाई मिल रहा है।

और दूर दूर की नजारे में पेड़ पौधे भी लगाया हुआ है।

जहां कई तरह के छोटा छोटा घर भी दिखाई मिल रहा है।

और ब्राउन कलर की भी है और कई तरह की बैग नजर आ रहा है।

और कई तरह के गाय भी नजर आ रहा है।

और नीचे में बड़ा सा पानी दिखाई मिल रहा है।

बड़ों की पैंट भी नजर आ रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक दुकान नजर आ रहा है।

और बड़े-बड़े पत्थर भी नजर आ रहा है।

और आसपास बहुत सारे घास भी है।

मुझे इस पिक्चर में बहोत सारा इंसान नजर आ रहा है।